फिर है मंदिर में एक औरत एक बच्चा पूजा कर रहें हैं। लोग यहाँ पे बैठे हैं। उम --

यह एक विद्यालय है। इसका नाम है लंगट।

चौबीसों घंटा सुविधा उपलब्ध है हर एक दिन सेवन इनटु ट्वेन्टी फोर ऑवर या घंटा यह चलता है।

और लोगों को अच्छी सुविधा मिलती है इसलिए यहाँ लोग ए.टी.एम. में पैसा निकाल --

बड़ा ही कटाई मछली है मलाह मछली बेचती हैं यह मछली देखने में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे --